पास में कुछ भूरे रंग के पत्थर दिखाई दे रहे है जिनपे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है।

यहां पर एक पक्षी है जो काले रंग का है।

यहां पर एक पोस्टर लगा है जिसपे श्री शिव राधा कृष्ण मंदिर लिखा हुआ है।

यहां पर एक कार खड़ी है जो सफेद रंग की है आसपास घर के बाहर कुछ दरवाजे लगे हुए हैं जो भूरे रंग के हैं।